जहां बैनर के ऊपर केरला होटल वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट लिखा है।

ये चित्र एक सब्जी की दुकान का दिखाई दे रहा है।

जो कि सफेद ऑरेंज काली कलर की हैं पानी की दो टंकियां दो बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

जो कि सीटी वॉक होटल के साइड में ही--

तीन आदमी एक औरत बैठी है पीछे की ओर क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है।

शटर और दरवाजे बंद हैं बाहर दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक बाइक खड़ी हैं।

एक गुलाबी चेयर रखी है एक व्यक्ति के पैर दिख रहे है।

ये चित्र एक गुलाबी बिल्डिंग का है जिसके अंदर शेड डला है।

लाइटें लगी हुई हैं बहुत से औरत और आदमी जीने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दो डब्बे यहां लगे हैं कथई और हर --

ये चित्र एक बड़े रेस्टोरेंट का दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में दो मंदिर दिख रहे हैं एक लाल मंदिर है।

यह चित्र एक हेयर सलून का दिखाई दे रहा है जहां दीवारों पे ईंटों का डिजाइन बना हुआ है।

सिलाइड लगी हुई है दो छित्रियां डली हुई हैं।

सुरण प्रभा लिखा है गोल्ड एंड डायमंड शोरूम लिखा हुआ है।

और इस कार को धोता हुआ दिख रहा है।

यह चित्र एक पहाड़ से लिया गया है नीचे की ओर बहुत सारे पेड़--

आसमान नीला और सफेद बादल दिख रहे हैं।

उनमें छोटे-बड़े पेड़-पौधे गमलों में लगे हुए दिख रहे हैं।